यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है एक दीवार दिखाई दे रही है दीवार के ऊपर कुछ ल-लोहे के डंडे दिखाई दे रहे है यहाँ पर दूर-दूर तक बड़े-बड़े पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक व्हाइट कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है एक व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

तो इसमें इ-इसके नीचे एक आदमी ऑटो को वॉश करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़ी-बड़ी कैने रखी हुई है यहाँ पर एक और ऑटो खड़ा हुआ एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बड़ा सा पेड़ भी दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है पानी में आसमान का रंग चमकता हुआ काफी सुन्दर लग रहा है ये नजारा शाम का है जहाँ पर आसमान की रौशनी --